घर के अंदर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के किनारे एक बड़ी सी गेट है आजू आस पास बहोत पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

पिक्चर में एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही हैं जिसके किनारे पर एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में फूलों की खेती की जा रही है जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं।

दीवार पर भी बहोत सारे सजावट की वस्तुएं लगी हुई है।

सामने की दीवार पर बलूंस लगे हुए हैं।

इस चित्र में टूरिस्ट प्लेस दिखाई दे रहा है।

सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

जो पीने और सफेद कलर से--

जहां पर झरना दिखाई दे रहा है जो की चट्टानों के बीच से कलकल करता हुआ बेह रहा है देखने में बड़ा ही मनोहर दृश्य है।